जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक ग्रॉसरी स्टोर का दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर सफेद रंग का लाइट जला हुआ प्रतीत हो रहा है।

ग्रोसरी स्टोर में देखा जाए तो बहुत सारे लकड़ी के कंपार्टमेंट्स बने हुए जिन्हें --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

लगे हुए दिखाई दे रही हैं पास ही में देखा जाय तो एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी ईसके निचले --

अगर उसके बोर्ड को ध्यान से देखा जाए तो एक के बोर्ड पर सिंडिकेट बैंक उसके ऊपर वाले बोर्ड पर गोल्ड लोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ये पिक्चर को देखके प्रतीत हो रहा है यह दिन का समय हैं।

गेट और तनो घरन भुरा प्रतित हो रहा है पासही मे एक घर हैघर के रंग को देख प्रतित हो रहा है ये सादे रंग से रंगा गया है ।

पत्थर ही पडे़ हुए दिखाई दे रहे हैं आसपास देख के पता चल रहा हैं ये दिन का समय हैं --

अगर नर्सिंग होम का बोर्ड को पढ़ा जाए तो उस पर लिखा हुआ है ममता नर्सिंग होम आपका स्वागत है सामने--

पास ही में कुछ लाइटस भी लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं सामने गि गौर से देखा जाए तो सामने कि और गेट के पास एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने काले रंग का शर्ट पहना हुआ है और--

स्लाइस ऑफ हैप्पिनेस लिखा हुआ है इसपे कई सारे चीजें रखें हुए है जिनमें से कुछ और केक --

बिच में खड़े हुए हैं और आसपास फूलों से और लाइट से सज्जा की गयी हैं --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक रोड का दृश्‍य दिखाई पड़ रहा है रोड आस-पास कई छोटे एवं बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं ।

बीचों बीच एक महिला भी खड़ी है जिसने अपने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ है और झाड़ियों में पानी देती हुई दिखाई पड़ रही है अगर पीछे देखा जाये तो एक सफ़ेद रंग का बिल्डिंग भी दिखाई पड़ रहा है --

आस पास देख के पता चल रहा है यह दिन का समय है।

आसपास कुछ इंसान बी हैं ऊपर की ओर देख के पता चल रहा हैं ये दिन का समय हैं --

रोड पे एक सामने इंसान भी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा जिसने सफेद रंग का सर्ट और काले रंग का पैंट पेहना हुआ है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यह एक गैरेज के अंदर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है गैरेज के ऊपर देखा जाए तो लाइट जली हुई दिखाई पड़ रही है बीचों बीच एक का--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इन जा एक दुकान के बाहर का दृश्‍य है दुकान के ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे चाय कॉलिंग लिखा गया है ।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

पीछे की ओर कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई पड़े हैं यहां बहोत जगह खाली मैदान भी दिखाई पड़ रहा है।

शर्ट पहना हुआ है दिखाई पड़ रहा है और एक इंसान जिसने काले रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है बीच में एक टी.वी. भी है और ऊपर की ओर लाइट एवं पंखे लगे हुए दिखाई पड़ रहे है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक रोड के आस-पास का दृश्‍य दिखाई पड़ रहा है रोड पे बहुत सारी गाडि़यां दिखाई पड़ रही है सामने --

बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई पड़े जिसमें से एक पोस्टर पर सी ए आर शुक्ला एंड कोच अटेड--